नदी का पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ है।

दुकान का अंदर ग्रीन कलर का एक फ्रिज है।

दुकान के सामने में बाइसाइकल खड़ा कर के है।

उनका दीवार में अलग अलग टाइप का पैटर्न टंगआया हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा माला भी टंगाया हुआ है।

यह हिरण का कलर ब्राउन है।

ये घर का कलर ब्लू और वाइट कलर का है।

का अंदर में बहुत सारा कॉपी किताब रखा हुआ है।

वाशिंग मशीन कपड़े में भी एक कार्टून है।

एक ऑटो में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक समुंदर दिखाई दे रहा है।

पेटी का सामने में एक फूल का पॉट भी रख के है।

ये फोतो में बड़ा वाला एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

का किनार में एक गाड़ी एक बाइक खड़ा करके है।

आदमी लोग का फेस को ब्लर करके है।

ये तीनों कपड़ा मैनिक्विन ने पहना हुआ है।

दुकान का बाहर में एक आदमी सामान खरीद रहा है।

बिल्डिंग को व्हाइट और ब्लू कलर से पेंट किया गया है।